तो द्वी मैस भैरी योक मै कॉफ़ी पीना दुहर अयी नि पीना।

त यक हॉल छ ब्याक यहाँ ब्या होनी और यख आदिम या अपन फोटो खिंचवाना।

दो नानतीनयाँ योग कनि और तो योग मैं ना सिखोंना सब और सब सबा नानतिन जु छन यां योग करन में लग री।

यौ तो भौते भल लागना औ न न न दिना डीजी फलन लेजी यौ मयाओ लागरो यां।

यह से में हारी ओर ज्न्दले लगी--